इसपे पार्क मे जो है उसमे पत्थर लगा हुआ है यहाँ से वाहा बीच मे गैफ है जिसमे घास-वस निकला है और पेड़-वुड भी है अच्छा सा महोल दिख रहा है।

यह ख किरकेट का मैदान हो रहा है जहाँ पे लोग सारा बहोत एकत्रित है और काफी लोग आपस में बात भी कर रहा है केतन कितना रन बनायेगा।

यह एक किरान का दुकान है स्टैशनेरी का दुकान है किरान का दुकान है एक कॉनटर है।

यह एक खेल मैदान है जहाँ पे लोग खेल रहा है। चारों साइड पेड़ ही पेड़ हैं । बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहा है ।